सामान दिख रहा है। कागज़ चिपकी हुई दिख रहा है। ऑटो दिख रहा है। गाड़ियां दिख रही हैं। बस ट्रक दुकान में ए.सी. वगैरह दिख रहा है।

दू बार दिख रही है कचरा दिख रहा है। रोड पे फट्टर इटे पड़े हुई दिख रहे हैं। लेडीज दिख रही हैं। गाड़ियां खड़ी दिख रही हैं। बैनर लगे जेंट्स दिख रहे हैं। ऊपर बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं।